ये गार्डनिंग कितना मस्त है पूरा एकदम गार्डन बना दिया है घेर दिया है और छत्त पर खड़ा होकर जो आब्ज़र्वैशन कर रहे है लगता है ये उन्ही का गार्डन है गार्डन मे जीतने भी पेड़ है बड़ा मस्त है लग रहा है अशोक का होगा अशोक का फूल का जो कैरिया है वो देखने मे बड़ा मस्त लग रहा है।